है। आसमान दिख रहा है।

इसमे टायर दिख रहे है आदमी दिख रहे है।

दिख रहा है। पेंड़ - पौधे दिख रहें हैं ।

इसमें सोफा दिख रहा है। दिख रहे हैं।

पानी दिख रहा है| पेड़ पौधे दिख रहे है| आसमान दिख रहा है।

फोर व्हीलर दिख रही हैपौधे दिख रहें है।

इसमें आदमी दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है। पेड़ देख रहा है। लाइट दिख रही है।

इसमें फोर व्हीलर दिख रही हैं। ऑटो दिख रहे हैं।